बहुत बड़ी कोठी है और यहां पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है अह यहां पर एक आदमी है जो सफाई कर रहा है और एक आदमी इसमें--

नर्सरी का सीन है और यहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं जो पन्नी की थैलियों म्म में बंद कर रखे हैं इन्होंने पैक कर रखे हैं।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

और एक टीचर खड़ी हुई हैं उधर की तरफ भी तो उस तरफ भी लड़के हैं कुछ और वो भी डेकोरेशन का सामान बना रहे हैं और यहां पे चेयर भी--

किंग की दुकान है और शॉप है और यहां पर अ मतलब अ बहुत सारा सोफा रखे हुए हैं और--

ये एक मंदिर का सीन है और यहां पर म्म यहां पे ये मंदिर है स्टेज है स्टेज है।

एक गोल सर्कल बना हुआ है और उसके चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं छोटे-छोटे और सामने की तरफ भी बहुत सारे पेड़ हैं और डेकोरेशन के पेड़ --

यह एक मॉल है और यहां पर बहुत सारे ऊपर की तरफ टीन लगी हुई है प्लास्टिक शीट लगी है और बहुत बड़ा जाल लगा हुआ है बल्फ लगे हुए हैं।

ये एक होटल का रूम है और ये यहां पर बेड लगा है डबल बेड है और यहां रजक राजाई है।

और कुछ प्लेट में रखी हुई हैं और उसमें हरे पत्ते भी हैं।

और ये मै मैंगो का कुछ सूप है और यहां पे बहोत सारे सामान एक रस्सी भी टंगी हुई है यहां पर और पीछे की तरफ एक बैग भी टंगा हुआ--